बगल की ओर कुछ हरे--

हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

आसमान नीला दिख रहा है।

आसमान में बादल दिख रहा है।

बेंच और डेक्स दिख रहा है।

वाइट बोर्ड दिख रहा है।

ब्लैक बोर्ड दिख रहा है।

एक मछली दिख रहा है।

कई आदमी दिख रहा है।

कई गाड़ी दिख रहा है।

उसके पीछे हरा पेड़ दिख रहा है।

यह साइकिल का दुकान है।

जो आदमी के पास खड़ी है।

पहाड़ पे चट्टान दिख रहा है।

पंछी दिख रहा है ।

एक सफेद इमारत दिख रहा है।

दो कुर्सी दिख रहा है।

इमारत में कई खिड़कियां दिख रही है।

एक आदमी दिख रहा है।

कुछ लोग बैठा दिख रहा है।

उसके सामने एक और आदमी दिख रहा है।